जो टावर के पास कुछ गिट्टियां मैदान में रखी हुई हैऔर रेते और हरा पेड़ पौधा है।

रास्ता है जो रास्ते में आर पार्किंग कार पार्किंग कर रहे है और बहुत सारे बसें खड़ी हुई है।

तर्जुन हे। में सामने आना लगा हुआ है शीशे लगी हुई है ऊपर कुछ फोटे फोटो रखा हुआ है। और एक आदमी एक सेविंग करवा रहा है।

डांस ई स्टेज बना हुआ है आज स उ ब पीछे ए टेन्ट लगे हुए है पोस्टर लगे हुए है।

और पाकड़ा पाकड़ने की कोशिस कर रहे हैं और द और अगल-बगल हरे पेड़-पौधे भी हैं।

और अगल-बगल कुछ ठेले भी लगे हुए हैं और पेड़ पौधे भी है हरे भरे हैं।